वाव ब्यूटीफुल कितना सुन्दर है ये! ऐसा लग रहा है एक पहाड़ी टाइप का है कितना सुन्दर-सुन्दर पेड़ है इसमें एक ग्रीन कलर का पेड़ है नीचे पहाड़ी है।

एक आसमान भी दिखाई दे रहा है ल लाइट येलो कलर का। बहुत सुन्दर लग रहा है ब्यूटीफुल एकदम ग्रीन -ग्रीन पेड़ है आसमान दिखाई दे रहा है नीचे पहाड़ी टाइप --

सामने वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसमें ब्लैक कलर की रोड है। उसपे भी थोड़ा ग्रीन - ग्रीन हो रहा है ये कितना सुन्दर लग रहा है वाव कितनी सुन्दर पार्क है वाव |

आस-पास में बहुत सारी पेड़ हैं ग्रीन कलर के बहुत सुंदर गार्डन है यह रोड ब्लैक कलर की है बहुत सुंदर है बहुत अच्छा लग रहा है।